जिसमें बुक वगैरह रखी हुई है और टेबल के ऊपर गुड्डा है।

साथ ही यहां पे अलग अलग प्रकार के सामान हैं।

यहाॅं पे बहोत सारे फ्रीजर भी रखे हुए हैं और आईस्क्रीम का बॅनर लगा हुआ हैं।

यहां सफेद कलर की लाइट लगी हुई है।

यहां पे एक खिड़की भी है खिड़की में पर्दा टका हुआ है।

एक आदमी ने हेलमेट पहना हुआ है यहाँ पे बहुत सारे लाइट भी है लोगों ने यहाँ पे लाइन लगा रखी है।

यह एक खेत है जिसमें बहुत सारे फूल उगे हुए हैं।

और यहाँ पे बहुत सारे बड़े-बड़े पेड़ भी है।

यह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है।

यहां पे टेबल भी है और चेयर भी है।

यहां पे एक नोटिस बोर्ड भी है।

यह एक हॉस्पिटल है जहां पे बाइक पार्क की जाती है यहां पे बड़े बड़े--